इसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है।

बगल में सीढ़ियां भी हैं और बहोत सारे रेलिंग भी लगे हुए हैं।

ऊपर में बहोत सारे पंखे और लाइट लगे हुए हैं।

यह चित्र में बहुत सारे मसाले हैं।

सामने में रखा है अलग अलग बोरों का रंग है ।

ऊपर में एक सफेद रंग का पंखा है।

सामने में जाने के लिए दरवाजा भी है।

अब पिलर में काले कलर का कुछ लगा हुआ है।

यह एक दुकान का चित्र है।

और अगल बगल में खिड़कियां बनी हुई है ।

सामने में एक मूर्ति भी रखा हुआ है और कुछ व्यक्ति भी बैठे हुए हैं।

यहां सामने में बहोत सारे व्यक्तियें हैं पीछे में बहोत से बड़े-बड़े पेड़ हैं।

बगल में यहां पर लिखा युवा है विकास एग्जिट और काउंटर इंक्वायरी ।

और बीच में फूल भी बना हुआ है।

यहां मेरे सामने में एक डेस्क के ऊपर एक केक रखा हुआ है।

यहां पर बहोत सारे जिम का समान रखा हुआ है।

यह एक रूम का चित्र है ।

यह एक अमरूद का चित्र है।